ये एक साबूदानी का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ साबूदानी --

और किनारे पर कुछ हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं।

और डायरी पिन पेन रहने वाला बॉक्स --

और दुकान पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

स्टेशन के किनारे पर कुछ जंगली पौधे जमे हुए दिख रहे हैं।

यह एक डी_जे का फोटो दिखाई दे रहा है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक के दुकान का फोटो दिखाई दे रहा है जीसके बाहर बहुत से फूल और मालाएं टंगी हुई है।